चेयर दिख रही है जंगले दिख रहे हैं।

पेड़ हैं बहुत सारे। नीचे पत्ते पड़े हैं। बैठने के लिए जिट्स हैं।

ऊपर नीचे टैंक्स बनी हुए हैं पानी गिरने के लिए।

और सामान बिक रहा है कुछ।

लड़की बैठ के फोटो खींचा रही है।

और उ-ब्-खम्बे हैं ट्रांसफरम हैं।

खाने के लिए कचौड़ी है। नीचे मेग्गी पड़ी है। कपडे धुलने का साबुन हैं।

अब दिख रहा है। बोरी है आलू दिख रहे है।

ऊँची-ऊँची ईमा ऊ बनी हुई हैं कलश लगे हुए हैं ऊपर।